ये क्या है भाई कुछ समझ में नहीं लग रहा है।

और आदमी चढ़ा हुआ है अ बहुत मस्ती कर रहा है।